बहुत है कैसे होगा ये बहुत देखने में कितना सुंदर दिस (दिख) रहा है।

यह कपड़े का दुकान में कितने खुटी में मन मे कपड़ा सारे मानवी से को कोट वोट शर्ट फुल पैंट पूरा टांगरा हुआ है रे गजबे एको ठोह त कोट कम से खरीद के ले लेते यार पहनने के लिए हो जाता ठण्डा में।

इतना दउरी दुकान पूरा छानी रहाय अरे गजब के गजब यार इतना भी वी. आई. पी. --

एक पार्क है छोटा सा पार्क लेकिन दिखने में कितना मस्त दिख रहा है गजब ही गजब यह पार्क लगा हुआ है इतना घास भी है दिख रहा है कितना मस्त दिख रहा है क्या बताये --